दीवार भी दिखाई दे रही है दीवार पर बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं।

और दीवार भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहोत बड़ी चट्टान दिखाई दे रही है और चट्टान के ऊपर चॉक से लिखा हुआ है।

और काउंटर भी दिखाई दे रहा है।

वृक्ष भी दिखाई दे रहा हैं और लोग भी दिख रहें हैं।